और एक आदमी जो हाथ में लोहा पकड़ कर इसको आग को जला रहा है।

इस कमरा के अंदर में एक वॉल क्लॉक दिखाई दे रहा है।

दृश्य में एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक नोटिस बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एयर कंडीशनर रख के भी दिखाई दे रहा है।

का पीछे में पहाड़ दिखाई दे रहा है।

अंदर बहुत सारा कपड़ा टंगा भी दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर का एक तस्वीर दिखाई दे रहा है।

इसे एक टेबल दिखाई दे रहा है।

इसका बगल में एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

का अंदर बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

जगह को पूरा माला फूल का माला से सजा के है।

इनका बगल में दो फ्लावर पॉट दिखाई दे रहा है।